इस जगह पे एक घर पर लेंटर गिरने का कार्य शुरू किया जा रहा है यहां पर छः लोग मिलकर यह कार्य कर रहे हैं।

और उसके अंदर वाइट टोकरी सी में हरा हरा पत्ते से धरे हैं।

पांच छह आदमी बीच में खड़े हैं ऊपरले दो मंजिले पे।

आदमी भी खड़े हैं यहां पे--

छोटा और एक स्टूल धरा है अंदर और एक कुर्सी है यहां पर लकड़ियों का सामान ज्यादा है।

इस लुगाई का मुंह ब्लर किया हुआ हैं और ये लुगाई ल लाल रंग का फिरॉक पेहन के बैठी हैं।

ये एक रूम है जहां पे एक बेड धराया है और दो तकिये और दो कुर्सी धरी है यहां पे और रिमोट भी धरा है यहां पे।

दो आदमी अंदर बैठे हैं इनका मुंह नहीं चमक रहा और ये इनका मुंह ब्लर किया हुआ है और एक आदमी बराबर में बैठा है उसका मुंह चमक रहा है।

यहां पे एक ट्राली पर एक आदमी पेंट कर रहा है।

हुई है और यहां पे पिद्दे भी है।

छोटे छोटे और यहां पे घास भी है ज्यादा--

यहां पे बहुत सारे आदमी कंप्यूटर चला रहे है।

टी बेंच पे टावर लगा है।

और एक बेंच है इस पर दो झंडे कुछ किताबें धरी हुई है।

पीछे एक ही आदमी खड़ा है कुछ ले के हाथ में थोड़ा सा और पीछे लाल रंग का ड्रम भी धरा है ऊपर टीन घिरी हुई है इस पे।

यहां पे बहोत सारे टेर धरती में गाड़ रखे है अधे ।

यहां पे चार आदमी खड़े है और तीन आदमी का मुंह ब्लर किया हुआ है।

उसके ऊपर एक बोर्ड एक मोबाइल और व्हाइट रंग के उसमें लगा होया है।

यहां पे एक बड़ा घर के बराबर में सीडी है जिन्ना और कुछ पेडे खड़े हैं और इस मकान पर रेड रंग होया है।

और ऊपर पीले रंग का और यहां पे कुछ जाल लगा है लोहे का इस मकान पे और थमले भी है।

नीले रंग का यहां पे उन पाइपों पे पै पेंट हो रहा है टीन के।

यहां पे एक मकान में चार दरवाजे और तीन विंडो है।

यहां पे एक घर के अंदर एक छोटा सा स्टूल और एक कुछ स्वामी राधे कृष्ण की छोटी छोटी तस्वीर धरी है।

और वो आसमान में बादल और व्हाइट रंग के भी बादल है और ब्लैक भी--

कुछ सोफे ग्रे रंग के हैं कुछ लीले कुछ पिंक पिंक है।

ये एक साइकिल की दुकान है।

यहां पे तीन मूर्ति व्हाइट रंग की पत्थर पे खड़ी है।

यहां पे तीन चार आदमी पीले टोपी पहन के और रेड शर्ट और नीचे ब्लैक ओ पहन के कुछ कर रहे हैं।

इनका मुंह सबका छुप रहा है दिख ना रहा है ब्लर हो रहा है।

और यहां पे ये पढसे रहे है वो कुर्सी और बेंच है सामने कुर्सियों पे बच्चे बैठे हैं।